और लोहे की जाली बनी हुई दिख रही है।

उस दुकान के बाहर जी ने--

जिसमें पीले कपड़े पहनकर एक आदमी ज़ीने चढ़ रहा है।

अंदर बहुत मंदी सी लाइटें जल रही हैं।

उसमें गुलाबी रंग की लाइटें जल रही हैं।

सोने के जैबरात रखे हैं।

ये एक बसो के बाहर पेड़ लगा हुआ है।

छत को बल्लियों के सहारे से खड़ा किया है।

यह तस्वीर एक गार्डन की है।

जिसके चारों तरफ गमले लगे हुए हैं गमले में पेड़ लगे हैं।

बीच में एक क्यारी है जिसमें घास लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक चीता है।

जिसकी खालचित खबरी है।

बाहर कांच का दरवाजा लगा है।

इस कमरे में एक कुर्सी और टेबल भी रखा है।

पास में एक दवाइयों का स्टोर भी है।

बिल्डिंग के बाहर सफेद गाड़ी खड़ी है।

दरवाजे के बाहर नीले बोर्ड लगाए--

वहां पर कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं।

जहां पर गाड़ियां आ जा रही हैं।

और कांच की टेबल रखी है।

यह दीवारों पर तस्वीरें बनी हुई हैं।